सामने में एक खंभा भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर में कुछ मोटरसाइकिलें भी दिखाई दे रही है।

आश्रम के अंदर बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शोरूम का फोटो है जहां पर एक कार दिखाई दे रही है ये कार सफेद रंग की है।

नीचे का फर्श बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

उसके सामने एक चेयर भी दिखाई दे रही है।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

नदी का पानी बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर पंखे भी लगाए गए हैं यहां के फर्श पर लाल रंग की कालीन को बिछाया गया है।

सामने वाले कार का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्यक्ति भी है।

यहां पर क्लास हो रहा है सभी व्यक्ति चेयर पर बैठे हुए हैं टीचर बोर्ड के पास खड़े हैं।

यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई है यहां पर पंखे भी लगाए गए हैं।

जहां पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां का फर्श बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

मंदिर के चारों ओर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

मंदिर के बॉर्डर पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यहां पर हॉकिन्स के प्रेशर कुकर भी दिखाई दे रहे हैं।